इस तस्वीर में हमें यहां पे एक मंदिर दिखाया गया हैं मंदिर के दीवार का कलर व्हाइट और ब्लू हैं हमें इसके बाहर हमे कुछ दुकाने दिखाई गई हैं।

और और जिसमें यहाँ पे कुछ अ अ तस्वीरें कुछ फोटो वगैरह ये स्टेचू लगे हुये है। और--

इस इमेज में हमें एक मॉल दिखाया गया है और मॉल के अंदर यहाँ पे कुछ अ समान रखा हुआ है छोटी-छोटी गाड़ियाँ हैं बच्चो के खेलने वाली।

कुछ माइक्स लगे हुए हैं इसके अलावा हमें एक आ बीच मे एक बड़ा सा बोर्ड दिखाया गया है।

और यहाँ पे बिल्डिंग है जिसका कलर वाइट दिखाया गया है कुछ लड़कियों है एक लड़की जिसने पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ है एक लड़का जिसने ग्रीन कलर का--

अलावा यहां पे हमे एक अ एम कांच दिखाया गया है जिसके अंदर सारा सामान रखा हुआ है।

इस इमेज में हमें एक किला दिखाया गया है। किले की दीवार दिखाई दे रही है यहाँ पे जो क्रीम कलर की है उम्म ब्राउन कलर है और यहाँ पे बाहर में हमे एक ग्राउन्ड दिखाया गया है।

इस इमेज मे हमे पहाड़ दिखाया गया है पहाड़ पे यहाँ पे घास दिखाई गयी है और इसके साथ ही हमें कुछ पेड़ भी दिखाए गए है।

इस इमेज में हमे बिल्डिंग दिखाई गयी है। बिल्डिंग में व्हाइट कलर है। बिल्डिंग के बाहर बड़े-बड़े पेड़ लगाए गए है।

इस इमेज में हमें एक मॉल दिखाया गया है और मॉल के पास यहाँ पे कुछ लाइट्स लगाई गई हैं लाइट्स में भी गृ --